ये बहोत बड़ा नदी है बादल बहोत साफ है।

यहाँ पे एक होटल का दिया हुआ आवासीय होटल --

रेत गिरा हुआ है वहा पे बहुत सारा पथल है और फिर--

सी फॉल है डैम बना हुआ है।